सामने कुछ काछ की खिड़कियाँ भी नज़र आ रही है जिसमे दूसरी इमारतों की परछाई भी नज़र आ रही है।

मैदान के पीछे बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहे है जिनके आगे कुछ घने पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है।

इस चित्र में एक पार्क नजर आ रहा है जिसके अंदर बड़े बड़े पेड़ लगे हुये दिख रहे है।

कुछ रेल की पटरियां भी नज़र आ रही है सामने बड़े-बड़े खम्बे और नागपुर जंक्शन का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

एक मिलिट्री टँक भी नजर आ रहा है जिसके पीछे एक व्यक्ति बेंच पर बैठा हुआ दिख रहा है सामने बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

रास्ते के बिच मे दो जिराफ़ की मूर्तिया भी रखी हुई दिख रही है साथ मे बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पौधे भी नज़र आ रहे है।

इस चित्र मे एक नदी नज़र आ रही है जिसके सामने बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस चित्र के अंदर एक बास्केट बॉल का मैदान दिखाई दे रहा है जहा पर दो गोल नज़र आ रहे है।